यह एक जंक्शन है हाजीपुर जंक्शन जो कि नाम है।

एक बंदा है जो जा रहा है रोड पे सड़क पे काफी सारी ये फीमेल्स है रिक्शा कुछ लोग रिक्शा में बैठे है।

काफी सारे टॉयज हैं गेम्स है बच्चों के काफी सारे--

यह एक पंडाल है जहां पे देवी की मूर्ति है।

लेडीसो ने साड़ी पहनी है किसी ने ड्रेस पहना है स्टेज पे एक लड़की खड़ी है।

और कुछ लोग बैठे हैं वहां पर कुछ खड़े हैं।

विंडोस छतरी है बाहर एंटीना वाली।

पीछे आ अंबेडकर साहब की फोटो लगी है।

यह एक दुकान है यहां पे काफी सारे प्लांट्स रखे हुए हैं।

गैराज में आई है काम के लिए वो काम--

गाड़ी की टायर बदली जा रही है सीट वगैरा लगाना ही बाकी है।

कांच की विंडोस है नीचे मार्बल टाइल्स लगी हुई है सामने व्हाइट कलर की क टेबल पे अ क--

और कुछ औ दीवाल पे पोस्टर टंगे हुए है।

बार्बी डॉल है डॉक्टर सेट है खिलौने है काफी सारे पिंक कलर के टॉयज काफी सारी है।

और येलो कलर के बच्चों की साइकिल --

एक ग्रीन कलर की कार टाइप है फिर व्हाइट ब्लैक कलर की साइकल है रेड जीप है बाजू में --

और शाम का समय है सूरज ढल रहा है काफी लोगों की छत है जिसमें विंडोस दिख रहे हैं।

शायद इस पर कुछ सामान रखे हुए हैं रंग बीरन--

यहां पे एक बैंक है जो कि एस_बी_आई बैंक है कुछ लोग हैं उसमें जा रहे हैं।

पीछे रेड कलर की दीवाल पर कुछ सा सर्टिफिकेटस लगाए हुए हैं।

एक है जो फेस अपना आईने में देख रहे हैं ऊपर पोस्टर लगे हैं ऑरेंज कलर की ग्रिल है।

कारपेट बिछा के ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है उसके ऊपर कुछ लोगों ने अपने घर से--

यह एक शॉप है जहां पे टेबल और अ म चेयर रखी हुई है दीवाल पे।